यह एक चर्च का तस्वीर है जहाँ पर कैन्डल जलाया जा रहा है।

बहुत सारे कैन्डल जलाए जा रहे है और बहुत सारे लोग भी है अंदर बाहर बहुत सारे लोग है यहाँ पर जो कैन्डल जला रहे है और यहाँ पर बाहर से पिक्चर लिया हुआ है।

अ यहाँ पर का अच्छा लुक है अच्छी जिम है और भी बहुत सारी जिम करने की एक्सरसाइज करने की फिट रहने की मशीन वगैरा हैं यहाँ अवलेबल है।

एक पुराना घुमने की जगह है इटो की बनी हुई है पुराना खंदार टाइप लग रहा है एक व्यक्ति है जो उसे देख रहे--

ये इसकी एक भीड़-भाड़ एरिया की जगह है जहां पर --

केन्डल के जो लाईट है बहोत ही सुन्दर लग रहे हैं और कुछ अगरबतीयाँ भी जलाई जा रही हैं बहोत ही सुन्दर लग रहा है यहां पर। नाईट का समय है। एक व्यक्ति है जो जला रहे हैं केन्डल ।